यहां पर सामने में कुछ व्यक्ति हैं।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

सामने में एक पीला कलर का छोटा सा--

यहां पर बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़कियां लगे हुए है।

सामने में कुछ स्टेच्यू भी रखे हुए है और यहां पर एक वाइट कलर का सीढ़ी भी बना हुआ है।

पीछे में एक टावर है जिसमें बहुत सारे तार लगी--

यहां पर यह मूर्ति में एक बांसुरी--

यहां पर तीन टुकटुक भी लगे हुए हैं जिसमें कुछ बैलून लगे हुए हैं।

जो अलग अलग रंग के मैट में लेते हुए हैं।

ऊपर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समान है।

यह चित्र में बहुत सारे वहान लगी हुए हैं।

सामने में बहोत सारे ऊपर में लाइट लगे हुए हैं और पंखे भी लगे हुए हैं।

पीछे में एक बहुत ही बड़ा व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

ऊपर में बहुत सारे सफेद रंग की छोटी छोटी लाइट लगी--

यह चित्र में एक व्यक्ति हाथी की सूंड में बैठा हुआ है।

यहां अगल बगल में चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे--

यहां पर बहुत सारे ग्रीन कलर के बैठने के लिए डेस्क बनाया गया है और यहां पर पीछे में एक और व्हाइट --

यहां पर पीछे में काले कलर का टैप लगा हुआ है।

यह चित्र एक बहोत ही बड़े रूम का है।

यह चित्र में बहोत सारे औरतें और मर्द हैं।

अगल बगल में चारों तरफ प्राचीन स्टेच्यू बने हुए है।

यहां पर चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है और बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

ऊपर में बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे डेस्क रखे हुए हैं।

एक ब्यक्ति डेस्क मे कुछ कर रहे हैं पीछे में काले कलर की खिड़कियां लगी हुई--

और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं सामने में एक चप्पल रखा हुआ है।